और एक बाहर पीला बोर्ड लगा हुआ है।

ये तस्वीर एक ढाबे की है।

समंदर में बहोत सारा पानी बरा हुआ है।

पीछे इसमें बहोत बड़े टायर लगे--

यहाँ पर कुछ सीढ़िया भी रखी हुई हैं।

एक नीले रंग का तख्ता धरती में बिछा हुआ है। यहां एक दरवाजा भी दिख रहा है।

ये तस्वीर एक पूजा होती हुई जगह की है।

बहोत सारी हवन की सामग्री रखी हुई है।

बहुत सारी बाईकें भी खड़ी है और एक कार भी।

ये सोफा बाहर खुली जगह में रखा हुआ है।

इस पर तीन तकिए भी रखे हुए हैं यहां एक आदमी भी--

कई कुर्सियां और टेबल यहां दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक हस्पताल की है।

ये तस्वीर एक दुकान की हैं।

ये एक मिल की तस्वीर है।

फर्श पर कुछ अखबार भी पड़े हैं।

दो आदमी यहां बैठे हुए हैं और आलू और प्याज की बोरिया भी--

यहां बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

ये तस्वीर एक बहोत अच्छे शहरी इलाके की है।

यहा कुछ घास फूस और पेड़ है यहां बहोत सारे खंबे भी है।

यहां बहोत सारी लाइटें जल रही हैं।

फंक्शन में बहोत अच्छी साज सजावट--

होई रखी है यहां पर कुर्सियां भी रखी हुई है और मंदिर--